यह तस्वीर एक पार्क की है ।

कोई सफेद टी शर्ट पहना है।

इसके बोर्ड पे क्रिप्स लिखा है।

यह है तस्वीर एक --

एक बोर्ड है नॉर्थ पोल लिखा है यहाँ पर लाइट्स लगी है।

स्कूल का क्लास है यहाँ --

बोर्ड है खिड़कियां हैं।

तालाब के किनारे कई लोग --

तरह-तरह के खिलोने हैं।

रखी है हरी साड़ी लाल साड़ी गोल्डन पीली नीली--

यह तस्वीर एक सैलून की है।

यह तस्वीर एक मस्जिद की है।

ये है कई लोग हैं।

पूल में खिलाड़ी खेल रहे हैं।

दुकान दिखाई दे रही है यहां कई सारी मछलियां हैं।

इस तस्वीर में एक --

दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है यहां लाइट्स हैं।

जो गोल है पास में मिनारा है।

जू में जानवर दिखाई दे रहे हैं।

यहां कई सारी किताबें हैं।

इस तस्वीर में एक ऑटो रिक्शा --